--और एक पेड़ हरा भरा दिख रहा है देखने मे जा वहाँ पर जाली भी लगी हुई है देखने में वहाँ बहोत सारे आदमी भी बैठे हैं।

अगर आदमी भी देख रहा है। दो आदमी भी दिख रहा है। यहाँ पर बोरिया भी दिख रही है कट्टीया भी दिख रही है और यहाँ पर कुछ लिखा भी है जो देखने मैं अच्छा--

छड़ियाँ लगी हुईं तार भी लगा हुआ एक आदमी खंबे पर भी चढ़ा है एक आदमी टीं भी चढ़ा हुआ है देखने में अच्छे लग रहे गुममे भी लग रहे गुममे भी धरे हुए बादल भी दिख रहा हरा - भरा भी दिख रा हैं।